तीन औरते है दो रस्सियां लगी है एक सफ़ेद और एक हरे रंग और कुछ बच्चियां वहा पे खड़ी है और आरके बच्ची पोस्टर दिखा रही है।

ऐतिहासिक इमारत बनी हुई है नकाशी हुयी हुई है कुछ मूर्तियो का करिगरी हुयी हुई है सामने खुला आसमान है।

बहुत सारी भीड लगी हुई है आदमी ओने पगड़ी पहनी हुई है कुछ ने गमछे डाले हुए है।

दो तीन पौधे लगे हुए है लाल कलर का पेंट है दीवार पर उपर क्रीम कलर का नीचे लायनिंग परपल कलर की दीवार पर।

सजावट हुई है लाइट लगी हुई है प्लास्टिक के गुलाब लगे हुए है सफ़ेद लाल फूल लगे है पड़दे डाले है गोल्डन गुलाबी रंग के।

पाच लोग खड़े है दो लडकीया खड़ी है तीन लड़के खड़े हुए है।

नहा रहे उपर से झरणे से पानी गीर रहा है।

साइड से बहुत सी एक के ऊपर एक प्रति रखी हुई है सामाने खिड़की है।